जब भगवान बनाया पेड़-पौधा कितना--

बहोत सुन्दर लग रहा है रेड का मेरा प--

ए रेड फ्रॉक वह कितने में अच्छा--

सुन्दर कितना अच्छा प्राकृतिक है बहुत --

कलर भी मिल रहा कितना अच्छा है कितना सुन्दर--

यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए है पड़ रहे कितना अच्छा--

अच्छा लग रहा है दो लोग है एक बना--

सुन्दर लग रहा कोई है वहाँ पे कुछ लोग--